इस फोटो में किसी वेन्यू का एंट्री गेट दिखाया गया है।

इस फोटो में छठ पूजा होती हुई दिखाई गई है।

गाने बजाने का एरिया दिखाया गया है।

सामने की तरफ छोटे से गमले में बरगद का पेड़ भी लगा है।

काउंटर में तरह तरह की मिठाइयां रखी हुई हैं।

नीचे वाले शेल में नमकीन भी रखी दिखाई दे रही है।

नर्सरी में अलग अलग तरह के गमले भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक डाइनिंग एरिया दिखाया गया है।

इस फोटो में किसी बिल्डिंग के सामने का दृश्य दिखाया गया है।

सामने की तरफ एक रोड भी है।

बच्चों ने सफेद रंग की पोशाक पहनी है।

इस फोटो में मिठाई व नमकीन की दुकान दिखाई गई है।

मूर्ति के नीचे एक मोर भी दिखाया गया है।

इस फोटो में एक क्लास रूम दिखाया गया है।

दुकान का नाम ए वन एन_जे_बी पार्लर है।

दुकान के सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

हॉस्पिटल के अंदर लाइट भी लगी हुई है।

अस्पताल के बाहर इमरजेंसी का बोर्ड भी लगा हुआ है।

हॉस्पिटल का नाम अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल है।

गेमिंग एरिया की टाइल सफेद व काले रंग की है।

गेमिंग एरिया में बहुत सारी खेलने वाली चीजें लगी हुई हैं।

इस फोटो में बच्चों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को दिखाया गया है।

रेस्टोरेंट के बाहर की दीवार लाल रंग की है।

टाइल पर दरा भी बिछाया गया है।

थिएटर में चलने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं।

इस फोटो में एक रोड का दृश्य दिखाया गया है।

बीच में एक टेबल व उसके चारों तरफ कुर्सियां पड़ी है।

कुछ कस्टमर मछलियां खरीदते हुए दिखाए गए हैं।

एक दुकानदार मछलियों को हंसीए से काट रहा है।

भक्त के बगल में एक पेड़ भी है।

गूफा में एक व्यक्ति भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है।

एक ग्राहक मछलियों को छांट रहा है।